सामने हमें एक मैदान दिखाई दे रहा है और उसके बाद साइड में हमें एक घर दिखाई दे रहा है वो भी पिंक कलर से पुता हुआ है।

यहाँ पे बहुत से लोग बैठ हुए हैं बहुत से लोग जा रहे हैं हमें ऑटो दिखाई दे रही है साइड में।

उ भी देखने में बहोत खूबसूरत लग रहा है नीचे साइड में टेबल अच्छी सजाई हुई दिखाई दे रहीं।

सामने हमे एक रेतीला मैदान दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत से लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

पर पेड़ दिख रहे हैं और हरियाली बहुत अच्छी सी आई हुई है और जमीन भी बहुत ग्रे कलर की दिख रही है देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है।

सामने एक घर दिखाई दे रहा है और एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पे पाँच से छह गाड़ी खड़ी हुई हैं।